गोल घूमाने वाली मशीन भी वहां पे पड़ी हुई है सिलेंडर भी वहां पे दिखाई दे र--

पीछे टेंट भीं लगा हुआ हैं बैक पे और बच्चों ने ब्लू और ग्रे रंग की अ ड्रेस पहनी हुई हैं सर्दी का मौसम हैं और दो टीचर्स भीं अ वहां पे दिखाई--

अपनी बॉडी का पूरा पार्ट का एक पुतला पोस्टर में खड़ा किया गया है वहां पे तीन बोतल पड़ी हैं दीवारों के ऊपर अपनी सारी बॉडी की पिक्चर्स लगाई गई हैं तीन बॉक्स पड़े हुए हैं।

और एक स्टैंड है और स्टैंड के अंदर काफी लाइब्रेरी में हर तरह की अम नॉलेज टाइप बुक्स अ पड़ी दिखाई--

ग्राउंड है अ पेड़ पौधे काफी कुछ लगा हुआ अ पार्क की तरफ एक टावर सा भी लगा हुआ है दो फ्लैग भी लगे --

अह बड़ी भाटिया पेंट की अह पड़ी दिखाई दे रही है और काफी अह खुली जगह है जहां पे पेंट की शॉप खुली है और दो पाइप भी खड़े हैं उसके बैक साइड पे--